यह दृश्य एक होटल का है जहां के सोफों का रंग भूरा है और टेबल क्लॉथ का रंग नीला है इस पे सफेद रंग की मैच भी रखे हुए हैं।

यह दृश्य टोकरी मे रखे आलुओं का है इस दृश्य में हम खूब सारे आलू देख सकते हैं।

प्रकार की टोकरी में ये रखे गए हैं उसका रंग भूरा है आलू काफी ही गंदे हैं।

यह दृश्य किसी टेलर या बुटीक की दुकान का है जिसका नाम स्टाइल है।

इस दृश्य में हम खूब सारे अलग अलग रंग के ब्लाउज कपड़े देख सकते है।

मंदिर के बगल में एक पेड़ और उस पेड़ के बगल में नि गुलाबी रंग का स्कूल है।

यहां पे एक कंटेनर बॉक्स है जिसका रंग गुलाबी एवं सफेद है

यह दृश्य एक कपड़े की दुकान का है जिसका नाम माय चॉइस है।

इस कालेज के आगे दो सफेद रंग की गाड़ियां लगी हुई हैं खूब सारी साइकिल और मोटरसाइकिल लगी हुई हैं।

इस ढाबे में दो कर्मचारी अपना काम कर रहा इस ढाबे में एक आदमी बैठ के अपना फोन चला रहा है।

दीवार पे एक लाल रंग का पोस्टर लगा हुआ है दीवार के ऊपर एक भगवान की मूर्ति बनी हुई है।

दुकान के बगल में इसके दो वर्कशॉप भी हैं जिनका रंग सफेद एवं नीला है।

ये दृश्य एक ऑफिस का है जिसका रंग भूरा एवं सफेद है।

ये दृश्य एक दुकान का है जिसे गौर से देखा जाए तो यह इलेक्ट्रॉनिकस की दुकान है इसका नाम भोला शोला है इसके आगे एक स्कूटी लगी हुई है।

दुकान के बगल में एक डिलोस नाम की दुकान और है इस दुकान की साइड में एक कच्ची दीवार है। सामने काले रंग की कुर्सी रखी हुई है।